ये एक मंदिर का फोटो है।

मूर्ति के पास पूजा की कई वस्तुएं रखी हुई है।

ये असम कृषि विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन है।

नीचे की और एक गुलाबी टब में कुछ हरी मिर्च जैसी चीजें रखी गई है।

पास में एक रिक्शा और एक बस डिखाई दे रही है।

फोटो रात के समय की लग रही है।

यहां बहुत सारे पेड़ और एक छोटा नदी है।

बाईं ओर दीप जलाते हुए लोग दिख रहे हैं।

अंदर लाल और पीले रंग के लैंप लटके हुए हैं।

ये एक सुंदर कैफे का कोना है।

यह द्श्य खुशी और उत्सव का माहौल दर्शाता है। उनके चारों ओर पौधे--